पैर का कलर है ब्राउन एंड व्हाइट तथा इसका चोंच का कलर है रेड ।

यह एक लाइब्रेरी का दृश्य है जो कि यहां पे बहुत सारे डेस्क बनाए गए हैं जो की रेड कलर का है।

और उसी के बगल में लोहे के मदद से बना है खिड़की।

एक व्यक्ति साइकिलिंग पे बैठा हुआ जो कि एक्सरसाइज़ की रहा है एक औरत है जो कि लेती हुई है जो की हरा कलर की साड़ी और ब्लू कलर की पहनी--

बाहर के साइड बहुत सारे लाइट जल रहे हैं जो कि ग्रीन ब्लू आसमानी रेड और ऊपर में एक व्हाइट कलर का बल्ब जल रहा है।

और पीछे में एक ए_सी लगा है जो की वाइट कलर का है और इसी पे डीएन छापा है दीवाल पर।

ब्राउन कलर का ऊपर में डेकोरेसन किया गया है और ऊपर में पेंट किए गए हैं।

और बिल्डिंग के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं जोकि पेड़ का कलर ब्राउन एंड ग्रीन है और घास भी है नीचे साइड --

और यहां पे बहुत सारे चेयर भी हैं जो कि चेयर का कलर ब्लैक एंड रेड है।